और पहाड़ से सफेद रंग का झरना गिर रहा है।

कमरे में टेबल है टेबल और एक कुर्सी है।

नेकलेस बहोत अच्छे लग रहे हैं ऊपर कोई पांच नेकलेस पहनाए गए और छोटी छोटी इयररिंग्स है।

और उसके निचे हेवी नेकलेस रखे गए हैं ब्लैक रंग की डमी को पहेना के--

जो की शादी वगैरा के लिए डेकोरेशन किया गया हैं इसमें लाल रंग के--

यहां बहोत सारे लोग हैं जो की ऑरेंज कलर की यूनिफॉर्म में है कुछ लोग कुछ लोग ब्लैक रंग के कपड़े में है इन्होंने कुछ लोगों ने हैट पेहनी हुई है।

टी शर्ट पहने और ऑरेंज कलर का पैंट पहने खड़ी हैं।

सबने अपनी अपनी मछली बेच रहे हैं कुछ लोग हैं जो मछली खरीद रहे हैं।

घर है जिसे सफेद रंग का है।

वो थोड़ा हरा और थोड़ा चॉकलेटी कलर का है।

हॉल में कुछ लोग सिक्योरिटी के लिए खड़े है और कुछ लोग ऐसे ही खड़े हैं।